आप ई जो देख रहे हैं प्रगति ल जनरल स्टोर जिसमें --

आप देख रहे हैं शुभ लक्ष्मी स्वीट कॉर्नर ।

लोहीम नगर चौक में है जो बहुत प्रचलित है और यहाँ के मिठाई खाने में बहुत स्वादिस्ट है।

और हमें आतायात नियमो का पालन करना चाहिए।

ऑल इंडिया मॉल ओह क्या बात है यहां पर चप्पल भी है अनेक प्रकार के कपड़े हैं।

बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ पर्व है जो सभी लेडिज लोग हैं सुबह का अर्ग पर रहा है।

पी.जे. प्लेस होटल्स बैंक्वेट विवाह भवन यहां पर हमलोग भी श-शादी के लिए ठहर सकते है।

ये आप जो देख रहे हैं पार्किंग जो यहाँ गाड़ी रखने के लिए पार्किंग है ये --

सरकारी कर्मचारी के कुछ भवन हैं | ये गाड़ी में यहां पर देखिये पुलिस लिखा हुआ है जो पुलिस की गाड़ी है | पुलिस कर्मचारी की गाड़ी होगी।

दो-तीन बड़े-बड़े घर दिख रहे हैं और कम से कम दस पन्द्रह मजदूर है।